यहां फूल ही फूल का ह्म्म्म बाजार लग रहा है बहुत सारे फूल रखे हुए है व्हाइट पीले ऑरेंज गुला --

एक बड़ी टंकी रखी हुई है और बगल पे भी कुछ रखा हुआ है और मछली म --

मालाएं भी टंगी हुए हैं मालाएं बहुत सुंदर लग रही हैं और उसके बाद एक ठेला लगा हुआ है।

एक कार खड़ी हुई है। कार बहुत डेकोरेट हो रही है। बहुत डेकोरेशन हो रहा है। रोड के उसपार बहुत सारी दुकानें दिख रही है।